काफी सारे लोग जा रहे हैं उधर से ।

सारे सामग्री शॉप पे रखा हुआ है ।

और यहाँ पे नवाज अदा होता है जो की पहले को काफी होते हैं मुसलमानों को काफी धर्म है ये ।

समोसे वाले हैं उधर पे पास में वाले सब अपनी-अपनी दुकान लगा रखी हैं उधर काफी सारे यहाँ ।

मछली जैसा दिखाई दे रहा है इधर --

और उधर काफी सारी लाइट्स लगी हुई हैं उधर रखा हुआ है ।

दिखाई दे रहे हैं उधर देखिए बहोत पेड़ काफी सारे दिखाई दे रहे हैं --

ये फील्ड दिखाई दे रहा है फील्ड में देखिए काफी सारे --